तस्वीर में बहुत ही खूबसूरत सप्त रंग का बाग नजर आ रहा है उस बाग में खूबसूरत।

वाली से सजाया गया है सड़क पर एक कार नजर आ रही है।

के इर्द गिर्द दो और इमारते खड़ी है इसका दरवाजा लकड़ी और लोहे कि जाली से बना हुआ है इसके --

खूबसूरत तरीके से सजाया गया फूलों से लदा हुआ मकान बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।

ईडे उसके इर्द गिर्द लोहे के जगले लगे हो जो के इसके खुबसूरती मलिन बड़ा रहे है जगले--

बगले के बाहर दो कारे खड़ी है एक कार के ऊपर कवर है जबकि इसके साथ गमले पड़े है गमले में पौधे लगे है ।

के साथ सिमटा हुआ है जबकि इसके काम करने वाले शक्स के सर पर काली टोपी सुर्क शर्ट पहनी हुई है ।